ये कोई मंदिर है मंदिर के बाहर--

ये कोई पुरानी हवेली है।

बुरे रंग की रास्ता है--

पांच लोग तकरीबन उसके ऊपर बैठे नीचे कोई पंद्रह बीस ।

कई दुकानें हैं लेकिन वो अभी बंद है।

दस - पंद्रह बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं कोई लिख रहा है।

यह एक अ थिएटर है यहां आपको बोल रहा है बोल रहे हैं कि ।

और साइकिल के दुकान में कोई भी नहीं है।

कुर्सियां डाली हुई है जैसे कि सोफा सोफे के--

ये एक पाठशाला है पाठशाला के बाहर --